पास में गराज का दुकान है उसके अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

दीवाल पे चित्र बना हुआ है।

और इसमें अलग अलग प्रकार के झंडे हैं।

एक ट्रांसफार्मर है जिसके नीचे में लिखा हुआ है दुखहरण मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित रानी हॉस्पिटल ।

इस रूम में लाइट लगे हुए है ए_सी हैं।

इस फोटो में एक घर को दर्शाया गया है जिसके अंदर एक आदमी ड्रिल से गड्ढा कर रहा है।

जिसमें डोसा वगैरा बनाया जाता है।

एक सोफा भी रखा हुआ है।

इस फोटो में एक क्लासरूम को दर्शाया गया है जिसमे एक टीचर बच्चों को मानचित्र में कुछ समझते हुए दिखाई दे रहे हैं।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है उसमें पर्दा लगा हुआ है जोकि हरा कलर का है।

इस फोटो में एक शोरूम को दिखाया गया है जो होंडा कंपनी का है।

इस दुकान का नाम है प्रगति होंडा ।

यम्मा कंपनी के बाईकों को देखा जा सकता है।

पानी भी पूरा शुद्ध है।

इस फोटो में एक रास्ता को दर्शाया गया है।

लाइट भी लगे हुए है।

इस फोटो में एक शादी घर का डेकोरेशन को दिखाया गया है जिसमें एक आदमी और उसकी पत्नी जो फोटो ले रहे हैं।

चाद में जो आपस में बातें कर रहे हैं।

और यह बोर्ड पे एक लिखा हुआ है फिल द क्लास ।

एक ओमनी खड़ा है एक स्कॉर्पियो है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

गमला में पेड़ पौधा उगाए हुए हैं।